यहां पर बल्क में बहोत सारी चीजें रखी हुई है।

यहां पर कई तरह तरह के झूले लगे दिखाई दे रहे हैं।

नीचे कुछ पेटी रही हैं उनके नीचे खट्टे रखे हैं।

यहां पर तार की फ फिटिंग पाइपों के माध्यम से की गई दी।

पीछे शीशे के बोर्ड लगे हुए हैं उन पर भी गमले रखे हुए हैं।

एक दुकान का सटर बंद है तथा दो दुकानों का शटर खुला हुआ है।

इस तस्वीर में एक बड़ा मंदिर नुमा संरचना दिखाई दे रही है।

एक घर सफेद रंग का है उसकी संरचना टीनाकार है।

इस फोटो में एक बैंक दिखाई दे रही है बैंक का नाम बैंक ऑफ़ बड़ोदा है।

बैरीकेडिंग सफेद तथा लाल रंग की है।

नहर के बीचो बीच में एक ओवर ब्रिज बना हुआ है।

एक बड़ी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है लाइट जल रही है।

स्टेज पर पत्तों से सजावट की गई है तथा फूल फूल लगे हुए हैं।